रुका हुआ है फोटो की तरफ देख रहा है और एक--

और दूर पार्क पे कुछ लोग चल रहे हैं।

लाल रंग की कमीज पहने हुए हैं।

और ऊपर की लाइन में बीच में एक लड़का है जिसके हाथ में एक झंडा है सफेद कमीज लगा है।

एक लड़के लड़का खड़ा पीछे बैग है इसके और कैप लगा के है।

ये ग्राउंड में कुछ लड़कियां खेल रही है।

दीवार के साइड दो बाइक रुकी हुई है।

ये मस्जिद है और यहां पे बहोत सारे लोग नमाज पढ़ रहे हैं।

बाहर भी कपड़े लगे हुए हैं अंदर भी लगे हुए हैं।

जिसमें गुलाबी रंग करके हैं गेट हैं।

हा ये स्टेज है जो फूलों से अह डेकोरेशन करके हैं।

और वहां पे कोई भी नजर नहीं आ रहा है लाइटिंग है और कुछ फोटो शूट का सामान भी है।

ये एक शादी अ लग रही है यहां पे जो सजाया जा रहा है।

पुल है और कुछ खंबे हैं।

सबको सफेद रंग का आ कपड़ा लगा के हैं और एक औरत है जिसको लाल रंग की साड़ी पेहन के हैं।

और वहां पे फ्रिज है उसमें जूस की बोतलें हैं लाल रंग का क्रेड है और ये अ --

अ ये जगह है जिससे बहुत सारी ऊंची पेड़ हैं एक दरवाजा है।

अ ये अ बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे जिसमें शेलफस हैं।

ये गिराज है यहाँ पे बहुत सारी स्कूटी है बाइक है।

और बड़ा सा टैंक है गाड़ी के पीछे।

यह मार्केट है और सफेद रंग की गाड़ी है।

इसमें कुछ लोग चढ़ रहे हैं कुछ लोग छत पे हैं गाड़ी सफेद रंग की है।

अ ये एक जगह है जहाँ पे ये एक कमरा है।

और ये एक बड़ा सा मॉल है और इसमें बहोत सारे चीजें बेचे जा रहे हैं और कुछ टेडी बियर है।

लाइटिंग है कप है बहुत सारा सामान है यहाँ पे।

और ये एक दुकान है कपड़ों का जिसमें बहुत सारे--

ये स्कूल की गाड़ी है और आगे एक--

और बस में बहुत सारे लोग सवार हैं।

दो लड़के एक साथ खड़े हैं और तीसरा पीछे देख रहा है।

यहाँ पे एक पत्थर है जिस पर एक आदमी बैठा है और यहाँ से दो बच्चे हैं।

बहुत सारी बाइके हैं उसपे भी आदि लोग बैठे हैं बेंच भी हैं बेंच में एक औरत बैठी है।

और बोर्ड भी है और इसको ऊपर से टीन लगा के हैं।

और कुछ अ लड़के दूसरे साइड से भी झोला झूल रहे हैं।

ये दो बिल्डिंग के हैं सफेद रंग के।

अ जिसमें जिसके पास पुल भी हैं।

जिससे कुछ खाने बना के हैं और इसमें गंदा पानी है पाइप हैं बहुत से टेंट है।

और चार पहिए इसके टायर हैं।

यहाँ पे दूर से भी कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है।

और इनके इसकी कार में इयरफोन लगाके हैं।